दुकान में ए.सी. लगा हुआ है लाइट भी है। .

पार्ले जी बिस्कुट है। मैगी है। पार्ले जी बिस्कुट यहां तेरासी तीरेसठ रुपया.--

ये एक लाइफ टाइप है। गया में है।

बोर्ड है। तार है। लाइट लगाने वाला है और --

इसके बगल में एक चित्र बनाया हुआ है। गाड़ी का चित्र है। चित्र चित्रे का रंग ऑरेंज कलर है। इसमें कुछ लिखा हुआ है और ईटा है बालू है। .